एक गाड़ी है उसमे कुछ मोटरसाइकल और कुछ स्क स्कूटी जैसी कुछ दुफय्या वाहन है इन गाड़ियों के पीछे हमे पेड़ भी दिखाई दे रहे है यह गाड़ियां लाइन से खड़े है।

सब्जी चावल आदि इसके साथ कही प्रकार के सब्जिया यहा मे हमे एक साथ दिखाई दे रही है। इसके साथ मे कुर्सी भी लगी हुई है।

इस लोहे के गेट पर कुछ विज्ञापन बी लगे हुए दिखाई दे रहे है इस गेट से लगा पूरा घिराव है।